नदी किनारे कुछ लोग नहा नहा रहे हैं।

यह एक अपार्टमेंट बना हुआ है। अपार्टमेंट में बहुत सारे फ्ला फ्लैट्स बने हुए हैं।

कॉफी स्टोर पर कॉफी विक्रेता कॉफी बेच रहा है।